यहा और सामने में एक ऑटो भी है जो की पीला कलर की है पीला और काला कलर की जिसमे एक लाइट भी जल रही है और यहाँ पे एक बाइक वाला अपनी स्कूटी मे बैठे हुए है जो की लाइट जल रही है पीछे मे--

यह एक बुक स्टाल है जो की काफी सारे बुक है यहां पर और काफी सारे बुक के स्टॉक र-रखे हुए है और यह काफी अच्छा दुकान है।

ये अच्छा है यहाँ पे बालू गिट्टी भी रखा हुआ है उस गार्डन में और उस गार्डन को घेरा गया है और उस ग्राउंड को पुरा तरह से लोहे के तारो से घेर दिया गया--

कुछ ओडर कर रहे हैं ऑर्डर पीछे ऑर्डर सामने मे भी एक लेडिज और जेन्स हैं जिन्होंने जेन्स हैं जो और कैप पेहेन रखी हैं और यहाँ पे काफी सारे लाल कलर के बल्ब ह

और यहाँ पे काफी अ लगता हैं। आज इसका ओपनिंग सेरीमनी हुआ हैं। यहाँ पे काफी सारे फुल पत्तिया हैं। यहां पे काफी सारे बैलूनन्स भी हैं। जो कि लाल और ब्लू कलर के हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग भी हैं। जिनमे से एक--

यह एक किला है जोकि काफी बड़ी है और काफी पुरानी भी है| इसपे काले धब्बे लग गए हैं| इसकी कलर कुछ बताई नहीं जा सकती क्योकि यह बहुत पुरानी है।

यह एक सडक हैं जो की पक्की सड़क हैं ईटा से बनाए गए हैं। ई-- सीमेंट बालू ईटा से बनाए गए हैं। अ इसपे काफी लोग चल रहे हैं। जिनमे से एक आदमी भागता हुआ नजर आ रहा हैं।